जहां कुछ टेबल ये रखी हुई हैं कुछ चेयर्स रखी हुई हैं जो कि ब्लू कलर की हैं।

एक टेबल दिख रही है ये ब्राउन कलर की जिस परे रेड कलर के बलून लगे हुए हैं।

इस इमेज में हमें रोड दिख रहा है रोड पर जो है बहुत सारी साइकिल ये खड़ी हुई दिख रही हैं।

आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं लाइट का खंबा दिख रहा है।

जो एक लड़का खड़ा हुआ है जो वाइट कलर का पेंट और ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

वर्कआउट कर रहा है एक लड़का बेठा हुआ है।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

इस इमेज में हमें जो है एक बड़े से क्लॉथ की शॉप दिख रही है।